इस फोटो में एक दुकान दिखाई गई है जिस के आगे की तरफ कांच का बहौत बड़ा दरवाजा लगा हुआ है तथा --

पेड़ और ख़म्भे दिखाई दे रहे हैं।

और एक अन्य बोर्ड भी लगा हुआ है।

और पीछे की तरफ से प्रतिमा काली दिखाई दे रही है।

उसके ऊपर बड़े अक्षरों में इलाहाबाद बैंक लिख रहा है।

इस फोटो में एक कमरा दिखाया गया है जहा पर --

सफेद रंग का हेलमेट पहना हुआ है तथा हरे रंग की जैकेट पहना हुआ है।

तीन महिला एक पुरुष हैं। सभी महिलाओं ने अलग-अलग तरीके के पोषाक पहन रखें तथा पुरुष ने नीले रंग का कुर्ता पेहेन रखा है।

थोड़े बड़े पौधे भी उगे हुए दिखाए दे रहे है। पीछे की तरफ बोहोत सारे बड़े पेड़ दिख रहे हैं तथा एक खम्बे पे दो लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

तथा सभी मोटरसाइकिल बुलेट हैं।

कुछ बच्चे खड़े दिख रहे हैं तथा बच्चो की संख्या दस से अधिक हैं।

टेबल पर बोतल और टिस्सु रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सभी महिलाओ ने सफ़ेद रंग की पोशाक पहन रखी है तथा गले में कुछ चुन्नी जैसा पहना हुआ है।

बैठे हुए दिखाई दे रहे है। लगता है व्यक्तियो कि संख्या तीन हैं और एक व्यक्ति रोड के ऊपर कुछ ठोकते हुए दिखाई दे रहा है।

अक्षरो में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।